यहां पर एक गोल घेरा भी बना हुआ है।

पीछे मे येलो कलर ब्लू कलर का लाइट भी लगा हुआ है।

यहां पर एक बच्चे ने व्हाइट कलर का ड्रेस पहना हुआ है।

पीछे में ब्लू कलर का बहुत ही बड़ा बिल्डिंग है।

ऊपर में लिखा हुआ है एस_बी_आई सेफ डिपॉजिट लॉकर्स अवेलेबल स्टेट बैंक ऑफ़ मैसूर ।

यह चित्र में सामने में सामने में एक बहुत ही बड़ा झूमर रखा हुआ है।

और एक बहुत ही बड़ा बिल्डिंग है पीछे में।

सामने में एक व्यक्ति मोबाइल लेके खड़ा है।

अगल बगल में चारों तरफ रंग बिरंगे ट्रे रखे हुए हैं।

ऊपर में येलो कलर का के दीवाल किया गया है।

बगल में रोलिक्स लिखा हुआ है।

यहां पर बहुत सारे बड़े बड़े पेड़ है।

यहां पर बहोत सारे व्यक्ति खड़े हुए हैं।

यह चित्र एक रूम का है यहां पर लिखा हुआ है आइडिया ।

वहां पर लाइट लगा हुआ है सामने में कुछ व्यक्ति हैं।

और बहौत सारे बड़े बड़े बिल्डिंग है।

यहां बिल्डिंग में ऊपर से ले के नीचे तक शीशा लगा हुआ है यहां पर लिखा हुआ है फेडरल बैंक ।

पीछे में डिस्क के अंदर बहुत सारा सामान रखा हुआ है।

इधर है यहां पर पिंक कलर का दीवार है।

जमीन में ब्लैक और ब्राउन कलर का टाइल्स लगा हुआ--

यहां पर सामने में नीचे में बहुत सारे दुकानें हैं।

बगल में यहां पर पीले कलर की मूर्ति बनी हुई है।

चारों तरफ ऊपर में बहुत सारे रॉड लगाए हुए हैं।

यहां पर डेस्क में बहुत सारे सामान रखें हुए है।

यहां पर कुछ टंगा हुआ भी है।

दीवाल में कुछ ह्यूमन्स लेबल बने हुए हैं।

यहां पर बेंच के ऊपर बहोत सारे किताबें भी है।

यह चित्र में एक पिंक कलर का बहुत ही बड़ा गेड है।

और बहोत सारे छोटे पेड़ भी हैं।